बहोत बढ़िया मंदिर है और भी बहुत कुछ दिख रहे है हरे भरे पेड़ है।

और इधर पंडित अम्म्म मतलब--

इसमें बहुत सारे किताब है एक बच्चा बैठका हुआ है उसने एक माक्स पहना है एक औरत चा पी रही है।

खड़े है और एक आदमी यही पे खड़े है बहुत सारे पेड़ है|

और कमल फूल भी फूटे हुए है एक सामने--